और उस पे कुछ चॉकलेट बिस्कुट कुछ चॉकलेट और अनेक प्रकार की चीज़े रखी हुई है।

और कुछ बंदर जो कि इधर-उधर घूम रहे है सामने हवेली है।